ब्लू स्काइ कलर पिंक कलर और भी कलर्स मे दिख रहे है और ऊपर डोरिया भी लगी हुई है खंभे लगे हुए है।